जिन पे बच्चे झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ बच्चे पानी में कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं सुबह का समय है।